जिसके अंदर बोहोत सारा लोग खड़ा हुआ है और ऊपर बोहोत सारा लाइट जल रहा है|

जो कि बोहोत ही खूबसूरत से डिज़ाइन में बना हुआ है। बोहोत सारा करंट तार भी नज़र --